दो पहिये वाहन भी दिखाई दे रहे है।

पीले ट्रेक्टर भी है जिससे वो जुड़ा हुआ है।

नीचे कुछ लोग हैं जो शाखा में जा रहे हैं और इधर --

और इसमें इनकी तीन मूर्तियाँ दिखाई गयी है और इसके ऊपर लाल कलर का एक स्वस्तिक भी लगाया गया है।

इस्तमाल की जाने वाली पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। एकदम लाइन से है। इसके ऊपर जरूरतें अनेक ए जगह एक लिखा गया है।

इसमें चावल छोड़ा गया है जो की साफ़-साफ़ दिखाई दे रहा है।

हॉस्पिटल बदायु जोकि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा हैं।

यह एक नाई का दुकान दिखाई दे रहा है जिसकी सजावट बोहोत ही अच्छे तरीके से की गयी है फूलों के द्वारा।

और इसका फर्श भी हल्के व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा हैं।

यह एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिखाई दे रहा है।

पत्थर भी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे है। बोहोत ही अच्छा लग रहा है। पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ बाइक के शीशे भी दिखाई दे रहे हैं। बोहोत ही अच्छा दी दिख रहा है।

खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

इस सटर शटर ग्रीन कलर और --

एक लड़का भी दिखाई दे रहा है जोकि अपने ब्लैक कलर की बाइक पर बैठा हुआ है।

जिसमें कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है। कुछ बाइके भी दिखाई दे रही है।